छोटे-छोटे पीला छुआ मन ए बेस रोटो टो आदमी मन ए पुजारी मन है केतेक बढ़िया फोटो खिंचाईन है कहाँ कर है।